दो जंगले दिखाई दे रहे हैं जिनके पास लोग खड़े हैं एक साइकिल खड़ी दिखाई दे रही है।

और टेबल पे काफी अखबार भी काट कर रखे अंगूर भी रखे है जिनका कलर काला है।

आस-पास और भी समान काफी रखा हुआ दिखाई दे रहा है पीछे कुर्सी टेबल रखे हुए दिखाई दे रहे है।

फूलों की माला लगी हुई है और आस पास में दीवार पर कुछ पेंटिंग्स भी रखी हुई हैं।

एक स्कूल बस खड़ी दिखाई दे रही है।

यह काफी बड़ी मकान या बिल्डिंग है इसके ऊपर एक कपड़ों की शॉप भी है जिसमें पुतला लगा हुआ है।

यह एक बड़ी बिल्डिंग है शिव शक्ति मां नाम की जिसके बाहर बाइक स्कूटियां खड़ी हुई हैं कुछ लोग --